होटल है यहां पे लोग बैठे हुए हैं यहां पे एक आदमी लिखकर बैठे हुए हैं।

और यहां पे भी आदमी बैठे हैं जो कुचेर पे हैं और बैठने के लिए टेबल भी है झाड़ है।

और आसमान नीला नजर आ रहा है दिन काटे--

यहां पे है ग्राउंड जो स्कूल के बच्चों के लिए है।

और कुर्सियों पे है कुर्सियों का कलर ब्लैक है दीवार का कलर वाइट है।

उजाला है धूप से पूरा उजाला नजर आ रहा है।

यहां पे है नर्सरी जो अलग-अलग पौधे हैं जो अलग-अलग फूल हैं लाल कलर वाइट कलर येलो कलर यहां पे है।